और यहां पे हैं बहुत से लोग हैं और लेडिस भी है।

सफेद फूल भी है हरी हरी पत्तियां है।

और एक कंप्यूटर भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें बराबर में प्लेट सी भी लगी हुई है।

और लड़कियां कुर्सी पर बैठी हुई है।

यह एक इंटर कॉलेज है और इस में बहुत से पेड़ लगे हुए हैं।

और बहुत से आदमी भी है एक कुर्सी रखी हुई है।